जैसा डिज़ाइन बना हुआ है और उसके साइड में सुपारी और नारियल का पेड़ है | एक आदमी अंदर जाने की कोशिश कर --

यहाँ पर एक व्हाइट शर्ट है सबके कंधे पे दो आदमी के कंधे पे गमछा है और एक कूरियर सर्विस करने भी--